टॉवर भी है। पहाड़ हैं। बोहोत ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं। ये जो फोटो क्लिक करवा रहे हैं ये सब। ग्रीन कलर के एक ठो जहाज पे बैठे हुए है। पानी जहाज पे बो --

ये ढलईयां हो रहा है ये हमारे यहाँ हमारे यहाँ भी होता है छत वत पे जो घर बनाये जाते हैं तो उपर से ढलईयां होता है जो गिट्टी बालू सीमेंट को उपर मिक्स करके ऊपर डाला जाता है यहाँ पे एक आदमी है जो जा रहा है दो आदमी जो बीछा रहे हैं एक आदमी खड़ा है दो आदमी भी खड़े हैं ईब पाइप उईप सब कुछ लगा हुआ है छड ओड़ की भी वयवसता है बेहद खूबसूरत नजारा है।